और पेड़ पौधा जगाइन हे जेमें हरा भरा दिखत हे रोड़ मे एक ठ आदमी ह।

ये है बरखा के नदी है ओमे आदमी मन डोंगा चलाथे चराई मन पानी पिए आथे।

--जेमे आदमी मन खाना खाए आथे।